यहाँ पर किसी का बर्थडे पार्टी हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

दो हाथ में दो पैर में पैंट की बनियाइन भी बहुत सुंदर लग रही है।

और यहाँ पर तीन कुर्सी भी रखी हुई हैं और यहाँ पर नीचे गुम्मा भी बिछी हुई है।